अच्छा ये प्लांट वेरका दूध होता है इसका वेरका का दूध है।

जिसमें साइडों पे गांव चुगा हुआ हैं ग्रीले लगी हुईं हैं नारियल के पेड़ आस पास सारा--

ये जो पिक्चर हैं बहोत ही बड़े ग्राउंड की पिक्चर है सामने जो है शडे दिख रही हैं।

ये जो पिक्चर है एक ढाबे की पिक्चर है जिसमें वैष्णो ढाबा लिखा हुआ है ढाबा जो है बहोत ही बड़ी जगह पे बहोत ही बड़ा ढाबा है।

ओ जो पिक्चर है एक शोरूम की पिक्चर है जिसमें कपड़े रखे हुए हैं टंगा के कपड़े रखे हैं अंदर जेंट्स शोरूम हैं शोरूम जो है बहुत ही बड़ा है डाई--